ऊपर एक टी.वी. लगी हुई है टी.एफ.एल. बल्ब दिख रही है आयेस दिखाई दे रहे है और एक किडकी भी दिखाई देती हुई--

और उसमें ब्रांचेस रखी है कुछ नीचे से ऊपर कुछ नीचे अ टेबल है फिर थोड़ी ऊपर है फिर थोड़ी ऊपर ऐसे पूरा बना हुआ है और--

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके एक जिसके ऊपर पूरा टीन का पोर्छ दिखाई दे रहा है सामने पर्पल कलर के फूल दिखाई दे रहे है।

दो तीन लंबे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैकुछ पेड़ मे और कुछ पेड़ मे पीले रंग की दिखाई दे रहे हैसामने मैदान दिखाई।

ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहा है कुछ ओस दिखाई दे रहे है बादल बिलखुल सफ़ेद दिखाई दे रही है।